एक गली नजर आ रही है।

इस लोहे को देख रहा है यह लोहा पिघलने के लिए रखा गया है यह बहुत हाई टेम्प्रेचर वाला --